बैंक सब में नौकरी भी ले सकते हैं ओर इसके बाद आगे चल कर उसे कभी दिक्कत नहीं होती |

बुखार आ गया कि किसी के पेट में दर्द है किसी का हाथ टूट गया किसी का पैर टूट गया तो इस हॉस्पिटल में भर्ती करके उसे इलाज किया जा सकता है और वो फिर ठीक हो जाते है।

जैसा कि आप लोग देख रहें हैं कि ये छोले भटूरे का चित्र है छोले भटूरे हम सब को भी खाने में बहुत मज़ा आता है काहे की --

और-और अर इसी के ऊपर से जाके हमलोग फ़ोटो वोटो भी खिचवाते है।

इसी बस में कई तरह की सुविधा होती है और बस जो है समय पे आती है और समय से जाती है यह बस एक कॉलेज बस भी होती है और स्कूल बस भी होती है जिसे --

और यू और इसी दुकान से सब्जी लेकर वह जो है घर में बनाते है और सब्जी स्वादिष्ट भी होते है खाने में पूरा मज़ा आता है।

यह एक मंदिर का है और मंदिर में जो है बहुत --

अरे इ और यह हम हम सबको शरीर को फिटनेस रखने के लिए हमे दौड़ना भी चाहिए ताकि --

हमलोग की शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और इसलिए हमलोग जब रेस लगाते है तो अच्छा होता है।